और यहाँ पर कपड़े लोग खरीदने आते हैं रेमंड के नाम से शॉप ओपन की गयी है किसी शहर या गाँव में----

शहर का है जहाँ पर खेत में हरी-भरी है और कुछ घर बने हुए हैं और तीन गाड़ियां भी खड़ी हुई है और यहाँ पे लोग इसका आनंद ले रहें हैं।

किसी गांव का है और इस चित्र द्वार हम यह अंदाजा लगा सकते है की यहाँ पे माँ दुर्गा पूजा वैगरह की लिए समान सारा मिलता है।

इस कप दुकान में कपड़े साड़ी वागरे भी बेंचे जाती है पूर्णियां मतलब किसी गाँव का दोकान है।

जहाँ पर माँ शेरावाली गारमेन्ट के नाम से ओपन की गयी है किसी गाँव मे इससे हमें ये पता चल रहा है और यह ओपन की हुई दुकान--

और इसके हरे इसके अगल-बगल हरे-पेड़ पौधे नजर आ रहें है जो की साफ तरीके से नजर नहीं आ रहें लेकिन हरा भरा जंगल--

और इसके आस-पास मे भी अ दोनों ओर से मंदिर बनी हुई-- आगे काफी बड़ा फील्ड और पीछे से इसके हरे-भरे पौधें लगे हुए एक साइड मे घर भी बना हुआ है।

और बड़े-बड़े से भी पौधे लगे हुए है और कुछ झूले भी पड़े हुए है जिससे बच्चे आनंद लेते हुए नजर आ रहे है।

यह एक चित्र है इस चित्र के माध्यम से हमें ये पताया यह पता लगाया जा सकता है की यह चित्र किसी घर या स्कुल या कॉलेज या अनाथ आश्रम या मंदिर वगेरा की है जहां पर ये चीजे है।

जहाँ पे एक गार्ड बैठा हुआ है अपने अंदर अपनी जगह पर और दो तीन गाड़ियाँ साइकिल खड़ी हुई और कर भी खड़ी हुई है एक आदमी खड़ा हुआ --